और इस पेट्रोल पंप का कलर है ब्लू और येलो ।

यहाँ एक बस स्टैंड है।

यह एक दुकान है जहाँ पर कि उसे दुकान के बाहर लिखा गया है चाय वाये कैफ़े ।

और बहुत सारे लेडिस भी बैठी हुई हैं कुछ खड़ी हैं।

यहाँ एक बुक की शॉप है।

जहाँ पर की तरह-तरह के चिप्स टंगे हुए हैं।

फिश लेकर जा रहे हैं और कुछ लोग उस फिश की फोटो भी खींच रहे हैं।

और इस दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा होकर --

यह एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर की कुछ दवाईयां --

यहाँ एक मेला है जहाँ पर की एक बहुत बड़ा झूला दिख रहा है।

अब होगी स्वच्छता की जीत वह हरे और लाल रंग से लिखा गया है।

पत्थरों के ऊपर बैठ कर फोटो खींचा रहा है और पीछे साइड पानी में --